वहां पे एक व्यक्ति भी है पीसने वाला जो की टी शर्ट और पैंट पहन के खड़ा हुआ है।

काफी सुन्दर लग रहे है यहाँ से देखने में पेड़ पौधे सब।

ये एक कंप्यूटर सेंटर है जहां के बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए है सिखाने के लिए।

यहां पे कपड़ा का दुकान है जो कि बाहर में बहोत सारे टी शर्ट टंगे हुए हैं।

यहां पे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें शिव कलेशन लिखा हुआ है।

एक साइड मे दो गर्ल का पुतला बनाया गया है।

यहाँ पे एक व्यक्ति जो की बैठा हुआ है और एक जो दूकानदार काट रहा है उसका बाल वो वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

ये पेट्रोल पंप का सीन जहां की बहुत सारे पेट्रोल पंप लाइट जले हुए हैं व्हाइट कलर का।

यहां पर बहुत सारे गाड़ियां भी है तेल लेने के लिए।

एक होटल है जो कि साई बाबा ढाबा का नाम से है।

छोटे छोटे मूर्तियां और भी बहुत सारे खिलौने--

और रोड के तरफ आ रहा है उसका लाइट जला हुआ है।